यह एक बहुत बड़ी दुकान का सीन है और दुकान का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और उसमे सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ है उसपे लिख --

यह एक बड़ी सी दुकान नजर आ रही है सामने की और एक बाइक रखी हुई है और यहाँ पर कुछ तस्वीरे भी नजर आ रही है जो की उप --

यह पर दो दुकाने नजर आ रही है और यहाँ पर दुकानों की गेट कांच से बने हुए है और यहाँ पर सफेद दीवार है सफेद दीवारों पर--